ग्राउंड के उस पार जंगलों से घेरकर--

चित्र टंगा है जिसमें लिखा है ब्लूशिनटन मेकअप एंड ब्यूटी सैलून और काफी तस्वीरे--

गाड़ी के नीचे एक लाल वाला चेयर है और एक आदमी खड़े होकर है।

कक्षा के चारों तरफ वॉल से घिरा हुआ है।

स्विमिंग पूल में पानी भी होकर है।

और दो लड़के खड़े होकर बात कर रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग है जिसमें तीन स्टोरे में बना हुआ है।

सीलिंग में एक लाइट बल्ब भी फिक्स करके है।

इसी पीछे का वॉल में--

सीलिंग से टंगा हुआ लाइट बल्ब्स भी दिख रहे हैं।

पीछे एक ऊंचा सा बिल्डिंग भी दिख पा रहा है।

एक एयर कंडीशनर मशीन बी इनस्टॉल किया रखा है।